इस तस्वीर में एक ए_सी लगा हुआ है।

चर्च में फादर प्रेयर कर रहे हैं।

इस शॉप में बहुत प्रकार के पौधे लगे हुए हैं ।

कुछ इमारतें भी दिख रही है।

एक आदमी हेलमेट पहना हुआ दिख रहा है।

इस तस्वीर में बिजली की तारे भी दिख रही है।

इस तस्वीर में एक झंडा दिख रहा है।

यह दिन का समय का तस्वीर है।

इस तस्वीर में पेपर भी है।

दिवाल पर एक घड़ी भी टंगा हुआ है।

यह एक स्टेशनरी दुकान का तस्वीर है।

इस तस्वीर में एक खिड़की है जिस से रोशनी आ रही है।

इस तस्वीर में बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं।

टेबल पर पानी की बोतले भी रखी हुई है।

यह रांची रेलवे स्टेशन का तस्वीर है।

आसमान में कुछ बादल छाए हुए हैं।

इस झरने से पानी बह रहा है ।

इस तस्वीर में एक पेड़ भी दिख रहा है।

इस दुकान में टाइल्से लगी हुई है ।

इस दुकान में एक टेबल लगा हुआ है।

इस तस्वीर में बहुत सारी पेड़ पौधे दिख रहे हैं ।

यह एक जिम रूम का तस्वीर है ।

तस्वीर में एक लाल रंग का दुपट्टा है ।